पूजा करते हैं और यहाँ की जो सजावट है वो चारों और से फुल और लाइट की सजावट की गई है और हम लोग ठाकुर जी से हमेशा अच्छे अच्छे विनती करते रहते --

यह देखिए यहाँ पे टेंपो स्टैंड है यहाँ कई तरह की टेंपो स्टैंड में खड़ी है और हर तरह का टेंपो हर एक साइड चलती है।

और जिससे आम जनता को इधर-उधर चलने में सुविधा होती है और कम से कम समय कम से कम रेट में ले जाते हैं।